एक गेट नजर आ रहा है यहाँ पर बैंक के बाहर कुछ बाइक्स नजर आ रही है यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर जमीन नजर आ रही है।

नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सामान पैकटों में पैक करके रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पे दो कुसिया नज़र आ रही हैं। ये कुर्सियाँ काले रंग की हैं। यहाँ पर और भी सामान हैं।